इस तस्वीर में हमें सामने की ओर एक सफेद रंग के मंदिर को दिखाया गया है।

इस तस्वीर मे हमे दुकानों को दिखाया गया है जिनमे से कुछ दुकाने बंद है।

वही ऊपर से बहुत से तार लगाए गए हैं यहाँ पर बहुत सारी पटरिया भी हैं।